कुछ लोग बैठे हुए तथा कुछ लोग खड़े हुए और कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने इटो की दिवार है और कुछ पेड़ छोटे तथा कुछ पेड़ --

यह तस्वीर एक बैंक के रूम की दिखाई दे रही है वाइट कलर के बोर्ड में बैंक का नाम अंकित दिखाई दे रहा --

इस तस्वीर में एक नीले रंग का मकान दिखाई दे रहा है जिसके समाने में इंडियन आयल पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा।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

सामने में बोहोत सारे हरे रंग के बड़े बड़े पेड़ लगे दिखाई दे रहे --

वह नदी में आधी खडी हुई दिखाई दे रही है कुछ औरतें पीछे बैठी हुई दिखाई दे रही है।

जो की सफ़ेद रंग की पत्थर की बनी हुई दिखाई दे रही है उसके बगल में दो और मुर्तिया दिखाई दे रही --

इस तस्वीर में एक नास्ते की प्लेट दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कुछ नास्ता रखा दिखाई दे रहा है।

चार पुरुषो का पुतला है और दो स्त्रियों के पुतले बने दिखाई दे --

एक एरो के निशान का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है एक टायर रखा हुआ --

इस तस्वीर में एक मजार दिखाई दे रही है जिसकी दीवारों में हरा रंग पेंट --